सभी सभी फैक्ट्री गोदामो में --

इनको बहुत ही अच्छा से रखा गया है।

ये एक जिम --

ये दोनों बहुत ही एज वाले हाथी है यहां पे बहुत ही पेड़-पौधे हैं।

ये पुतले काफी खूबसूरत दिख रहे हैं कपड़े में।

ये मिथिलेश यादव की होटल है यहां पर देसी मुर्गी देसी मछली --

कैरम बोर्ड खेलने के लिए और बहोत सारे आइटम मिलते है यहाँ पे।

यह एक दुकान की तस्वीर है यहाँ पे काफी मात्रा में --